यह एक गोदाम है जिसके अन्दर कुछ गट्टे भी रखे हुए हैं जिसके अंदर एक पिकअप भी खड़ी है जिसमे कुछ आदमी भी खड़े हैं और एक आदमी गट्टा लेकर जा रहा है।

इसके अंदर कुछ लोहे के ड्रम भी रखे हुए है।

यह एक जिम सेंटर है जिसके अंदर कुछ लड़के जिम भी कर रहे हैं।

इसके पास में एक दुकान भी है जिसके पीछे कुछ पेड़ भी लगे हुए और कुछ लाइने भी लगी हुई है।

और इसके बाहर एक एक बोर्ड भी लगा हुआ हैं और नीचे कुछ छोटी छोटी घास भी खड़ी हुई है।

पीछे कुछ बहुत सा सामान भी रखा हुआ है।

और एक प्लेट भी डली है जिसमें खाना मिला हुआ है।

जिसके अंदर कुछ जिम के पोस्टर भी लगे हुए हैं।

यह एक टेबल है टेबल के ऊपर एक प्लेट धरी हुई है।

और इसके बीच में एक पानी का झरना भी बह रहा है।

और इसमें बिजली का बोर्ड भी लगा हुआ है इस बेड पर गोल्ड करल का पेंट भी हो रखा है।

दीवार पर कुछ औजार भी टंगे हुए हैं।

और उसके पीछे एक थैला भी टंगा हुआ है।

यह एक दुकान है इसके अंदर कुछ टुब और कुछ सामान धरा हुआ है और इसमें एक लाइट भी है।

और एक कार खड़ी हुई है और इसमें एक लोग भी है।

जिसकी छत में एक लाइट भी लगी हुई है।

और पीछे कुछ बड़े पेड़भी हैं और इसके पीछे कुछ दीवारें भी हैं।

और इसके पास में एक रोड भी है।

यह एक घर है जिसके अंदर बच्चों के खिलौने रखे हुए हैं।